यह दृश्य में एक जाप नजर आ रही है जिसके बाहर एयरटेल का बहोत बड़ा बैनर लगाया हुआ है।

इस दृश्य में एक ऑफिस नजर आ रही है।

यह दृश्य में एक बाइक का शोरूम नजर आ रहा है।

उस झील के बीचो बीच कुछ चीज भी नजर आ रही है व्हाईट कलर की।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी पे बहुत सारे फूलों के गमले रखे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसके अंदर बहोत सारे टेबल और चेयर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मस्जिद के अंदर रेड कलर की कारपेट बिछी हुई नजर आ रही है।

अंदर एक ए_सी भी नजर आ रही है।

इसके बाहर बैनर लगाकर जावा कंप्यूटर एजेंसी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

साइड में तीन स्कूटी भी नजर आ रही है।

स्कूल के ऊपर एच एस वी स स्कूल का बैनर भी लगाया हुआ नजर आ रहा है।

उसके सेकंड फ्लोर के बालकनी में बहुत से दिए लगाए हुए हैं।

साइड में रखी हुई ईट भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक एडजस्टेबल फैन भी नजर आ रही है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है जीस रेस्टोरेंट के अंदर बहोत ही खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है।